दो लड़कियां स्टेज पर नाच रही है।

और लड़के उसके आगे पीछे वो साज बजा रहे हैं।

बच्चे पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।

शॉप में लड़कियों का सामान दिखाई दे रहा है।

शॉप काफी बड़ी नजर आ रही है।

दोनों शॉप अलग अलग नजर आ रही है।

जो कि सुंदर लग रही है।

इसकी सड़क की काफी बड़ी नजर--

येह बहोत ही सुंदर दिखाई नजर दे रहा है।

पार्क में बहोत सारे झूले हुए हैं।

दरवाजा काफी बड़ा हुआ लग रहा--